सामने कार से खड़ा है उसपे लाइट की परछाई पड़ती हुई नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है पीछे वाली कुर्सी दिख रही है।

चार सीढ़िया लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

दरवाजे पर सफ़ेद पट्टी से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुर्सी दिखाई दे रही है दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बॉल दिखाई दे रहा है --

एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बाइक पे बैठा हुआ --

सॉस की बोतले दिखाई दे रही है।

जिसपे ऍम.ए.एन.टी.के.के.ए. लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है।